--बड़ा बत्तख के नाव बनी हुई है बच्चे ऐसे नाव में बैठते हैं बड़े भी बैठ सकते हैं और यहाँ चारो तरफ पानी पानी भरा है बहोत बड़ी झील है दूर बहोत बड़े पेड़ पौधे हैं पहाड़ है।

--और क्या बोलते है बोहोत बड़ी बैंक है छोटी नहीं सरकार और ये सरकारी बैंक है बोहोत सही है सभी के लिए--

जो हमारे जरूरत के है इसका लोगो भी यहां घर बना हुआ हैं यहाँ देखने में बहोत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा हैं अच्छा--